नमस्कार दोस्तों subplots पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में subplots बनाने और उनके मध्य स्वीच करने में सक्षम होंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि ipython कंसोल पर बुनियादी python कमांड कैसे चलाएं
पहले ctrl+alt+t कीज को एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें अब टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab package आरंभ करें टाइप करें percentage pylab और एंटर दबाएं
दो प्लॉट्स की तुलना करने के लिए हम समान plotting area में प्लॉट्स बनायेंगे
अब समान plotting area में cosine plot और exponential curve दो प्लॉट्स बनाएं
type करें
type करें
यहाँ दो प्लॉट्स में भिन्न नियमित axes है तो हम overlaid plots नहीं बना सकते हैं
ऐसे मामलों में हम subplots बना सकते हैं
हम इसे पूरा करने के लिए subplot कमांड का उपयोग करेंगे
हम पहला subplot देख सकते हैं subplot कमांड तीन arguments लेता है
पहला arguments subplots के रोज़ का नंबर है इसे बनाया जाना चाहिए यहाँ plot horizontally को विभाजित करने के लिए पहला argument 2 है
दूसरा argument subplots के कॉलम्स का नंबर है इसे बनाया जाना चाहिए
आखिरी argument subplot के लिए serial number निर्दिष्ट करता है यहाँ हमने argument के रूप में 1 पास किया जो upper subplot बनाता है
यदि हम subplot ब्रैकेट्स में 2 comma 1 comma 2 के रूप में subplot कमांड निष्पादित करते हैं तो lower subplot बनता है
यहाँ हम तो subplots देख सकते हैं
अब हम plot कमांड का उपयोग करके प्रत्येक subplot area में प्लॉट्स बना सकते हैं टाइप करें
अब type करें
यह subplot एरिया में से प्रत्येक में दो प्लॉट्स बनाता है ऊपरी subplot में cosine curve है और निचले subplot में parabola है
यह दो subplots से स्पष्ट है उन दोनों के भिन्न नियमित axes हैं
cosine curve के लिए xaxis 0 से 50 भिन्न है और yaxis minus 1 से 1 भिन्न है
parabolic curve के लिए xaxis 0 से 5 भिन्न है और yaxis 0 से 25 भिन्न है
अब प्लॉट विंडो साफ करें
विडियो रोकें इस अध्याय को हल करने का प्रयास करें और पुनः विडियो चलाएं
pressure volume और temperatures समीकरण pv equals to nrt द्वारा होते हैं जहाँ nr स्थिरांक है
मानिए कि nr equals to 001 joules per kelvin और t equals to 200k v 21cc से 100cc की रेंज में हो सकता है
subplots के रूप में दो भिन्न प्लॉट्स बनाएं:
हल के लिए टर्मिनल पर जाएं
शुरू करने के लिए volume की range की गई है जिससे हम वेरिएबल v का परिभाषित कर सकते हैं
v equals to linspace ब्रैकेट्स में 21 comma 100 comma 500
हम पहला subplot बना सकते हैं और इस v का उपयोग करके pressure v/s volume ग्राफ बना सकते हैं
हम जानते हैं कि nrt स्थिरांक है जो 20 के बराबर है
अब हम दूसरा subplot बना सकते हैं और निम्नानुसार pressure v/s temperature plot बना सकते हैं
अब हमारे पास एक एरर है जो दर्शाती है x और y dimensions मेल नहीं खा रहे हैं
अतः हम temperature के लिए समान नंबर के प्वाइंट्स बनायेंगे
type करें
अब हमारे पास t में 500 वेल्यूज है और प्रत्येक 200 kelvin वेल्यू के साथ है
इस डेटा को प्लॉट करके हमें आवश्यक प्लॉट मिलता है
हम क्रमशः pressure v/s volume और pressure v/s temperature के दो subplots देख सकते हैं
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
1निम्न में से सही कौन है
और उत्तर पहला विकल्प है
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें
कृपया पाइथन पर आपकी सामान्य क्वेरी को इस फोरम पर पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैअधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से में जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद